रो रोड भी है यहाँ पे आधे से दे रहे हैं पीला कलर का आदमी टी शर्ट पहने हुए ब्लू कलर का पेजामा पहने हुए है एक गमछा भी लटकाए हुए हैं।